यह एक ग्राहक यह एक ग्राहक सेवा केंद्र है यह इसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक लोक सेवा यहाँ आप हम देख रहे है की बहोत तरह के लोग खड़े हैं औरत और जेंट्स और लेडिज दोनो यहां तीन दुकाने हैं।

आज ही इसका ओपनिंग हुआ है हम देख सकते है कि यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियास है तरह-तरह के और फिर यहाँ पे मेनू में लिखा है इटेलियन पिज़्ज़ा टेस्ट ऑफ़ द सीक्रेट वैगेरह-वैगेरह।

यह एक यह एक मंदिर परिसर है जहाँ पे बहोत सारे पंडित लोग भक्त लोग मिल के प्रसाद बना रहे हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं ।

कुदाल है कड़ाही है बाँस-बल्ले है छड़ है रॉड है टिनी टिना लगा हुआ है पुराने वाले इसके बगल घर में और यहाँ पे एक आदमी उसका सेण्टिंग ठोक रहा है।

ऐरोप्लेन की और बहुत अच्छा ये एयरपोर्ट है ऑड पीछे यहाँ पे टनल भी बने हुए है यहाँ पे जाने के लिए अंदर में और काफी लम्बा है।

पुरी घास एकदम हरी-भरी है और साइड में चलने-फिरने की भी जगह है इस बगल मे तालाब भी है पेड़-पौधे है बालकनी है।

यहां एक घर बन रहा है उम्म्म काफी अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे जोकि एक अंकल है जो प्लास्टर के लिए चहर रखे हुए है और आंटी पानी भर रही है।

जैसा कि हम देख सकते है यहाँ पे चार दो तीन सात लोग बैठे हैं एक जो है जो कि टोपी पूरा --